और यहां पर चादरें बिछा के सो रहे ।

यहां पर कई सारी लाइटें लगी हैं।

किसी प्रकार की शादी का समारोह चल रहा है।

ये एक चार्ट की दुकान का चित्र है।

यह एक स्टेडियम का चित्र है।

यहां पर कई प्रकार की साड़ियां बिक रही हैं।

लाल रंग की साड़ी हरे रंग की साड़ी--

यह चित्र एक हॉस्पिटल का है।

कहां कहां के परफ्यूम बिक रहें हैं।

लगता है कोई प्रवचन चल रहा है।

स्कूल की बसें दिखाई दे रही हैं।

मस्जिद में हरी जा-नमाजी--

यहां इंजीनियर खड़ा हुआ है।

चर्च पे मीनारा बना हुआ है।

चर्च की पुताई पीले और सफेद रंग से की गई है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

रोड को डॉमर से किया गया है।

वे पर बहुत सारे तार ल लगे हुए हैं।

पेड़ हैं पौधे हैं।

दो तकिए हैं एक पंखा है।

एक कुर्सी है एक सोफा है।

यह एक इमारत है।

कई सारा सामान बिक रहा है।

इस चित्र में एक कॉलेज दिखाई दे रहा है।

रेसलिंग के लिए तैयार हैं।

कई सारी फूल मालाएं लगी हैं।

बर्थडे पार्टी चल रही है।

यहां पर सफेद गेट है।